बेंक का बोर्ड लगा है और ऐ.टी.एम. का भी लगा है वहाँ पे एक शटर है वो नीले कलर का बंध है और वहां पे एक बाग़ भी दिक् उसके बगल में बैठने के लिए हरे कलर का सामने रास्ता है कुछ पत्थरें पड़ी हुई दिख रही हैं।

एक बैंक दिख रहा है बाहर की तरफ एक बैंक का बोर्ड लग हुआ है बड़ा सा और नीचे कुछ अ-जो है दो शटर्स दिख रहे हैं।

पानी दिख रहा है पानी में एक बतक का अ अम अ न बना हुवा जहाज दिख रहा है उसमे कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं वो --